यह एक स्पीक समारोह है जहां म्यूजिक का तथा पीछे एक चर्च भी है इसमें एक म्यूजिक हो रहा है इसमें एक ब्लू कलर --

बाहर दो तीन गाड़ियां भी खड़ी हुई है इसमें दो गाड़ियां हल्की व्हाइट है बीच की --

गाड़ी अब देख सकते है स्टेशन पर खड़ी हुई है।

और एक मटकी भी रखी हुई है एक आदमी मसाला मिल रहा है पीछे एक आदमी खड़ा है।

जहां सब्जियां परचूनों की दुकान के सामान सब मिलता है।

इसमें यह एक वर्कशॉप है मोटरसाइकिल का एक मोटरसाइकिल खड़ी है इसमें --

ड्राम भी है और कापी टायर्स पड़े हैं देख सकते हैं ऊपर टीनों की वर्कशॉप है ये।

और साइड में कुछ और दुकाने भी हैं ऊपर उर्दू में कुछ नाम लिखा हुआ है।

चर्च के गेट पर कुछ पादरी कुछ पढ़ रहे है बहुत सारे सफेद ड्रेस पहन के कुछ पढ़ रहे है।